यहाँ एक जगह है उस जगह के आस पास बहोत सारे पेड़-पौधे है एवं--

चट्टानों के आसपास कुछ लोग भी दिखाई दे रहे है और वहाँ पर बहोत बड़े-बड़े पत्थर भी हैं।

यहाँ एक जगह है जहाँ पर एक बहुत बड़ी दुकान है दुकान के आसपास बहुत सारे कप रखे--